हैं और यहां पर एक रिसेप्शन है।

यहां पर आस पास कुछ घर है।

और यहां पर एक कांच--

सामने एक मछली मंडी है।

यहाँ पर कुछ दुकाने हैं।

और यहां कुछ बोर्ड लगे हुए--